जिसमें छोटे-छोटे पत्ते लगे हुए दिख रहे हैं पहाड़ दिख रहा है बादल दिख रहे है वाइट कलर के और ग्रे --

ग्राउंड दिख रही है ग्राउंड में बहुत सारी बाइक रखी हुई दिख रही है खम्भा दिख रहा है।

और काँच दिख रहे है अ सामने बाइक खड़ी हुई दिख रही है और दुकान दिख रही है जिसमे येलो कलर की लाइट टगी हुई है और--

दिवार दिख रही है जिसमें ब्लू कलर और वाइट कलर का पेंट किया हुआ है लाइट जल रही हैं।

सामने रोड दिख रही है रोड पे एक आदमी चल रहा है ब्लू कलर पर्पल कलर साल ओढ़ा है।

रोड दिख रही है रोड के किनारे हलके-हलके घास उगे हुए दिख रहे है।